बाहर की और एक हवन कुंड बना हुआ है तथा आस-पास लाइटें लगी हुई है छत पर हलका ब्राउन कलर तथा पक्षियों के डिज़ाइन बने है।

तथा स बगल मे राउन्ड शेप मे बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए है।

यह बहुत ही पुराना हो चुका है तथा बाहर से रोसनी अंदर की ओर आ रही--